बहुत सारे आदमी और औरतें दिखाई दे रही है।

पीछे घर दिखाइ पड़ रहे हैं बिजली के खंभे लगे हुए हैं झंडा लगा हुआ है।